एक बस दिख रही है वाइट कलर की है।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

लकड़ी से बनी हुई कुछ चेयर दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक पुल दिख रहा--

यहां पर थोड़ी थोड़ी ग्रीन कलर की घास भी दिखाई दे रही है।

पीछे बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ दिख रहे हैं साथ में--

साथ में पीछे की ओर बहोत सारे लोग दिखाई रहे--

यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग।

सामने कुछ फूल लगे हुए है।

एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और पीछे की ओर हमें दिख रही है यहां पर एक बॉक--

दिख रही है हमें कुछ व्हाइट कलर की दीवारें--

दिखाई दे रही है जिसमें कि सैम--

यहां पर हमें दिखाई दे रही है।

और उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर दिखाई दे रहा है आगे की ओर एक झंडा लगा हुआ--

यहां पर एक टंकी दिख रही है।

जिसमें कि घास लगी हुई है ग्रीन कलर ।

जिसमें वाइट कलर की चेयर्स लगी हुई है।

पीछे एक पेड़ है ग्रीन कलर का--

मेकअप का बहोत सारा सामान भी दिखाई दे रहा--

यहां पर हमें एक बोर्ड दिख रहा है जिसमें येलो लाइट जल रही है।

सामने टी_वी दिखाई दे रहा है।

एक बेड के ऊपर कम्बल दिख रहा है।

चर्च दिख रहा है जिसके ऊपर--